यहाँ पर बहुत बड़ा- सा घर दिख रहा हैं।

यहां पर बहुत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

अअअ ज्योति रेस्टोरेंट में बैठे हुए है खाना पीना --

यहाँ पर रेल का स्टेशन दिख रहा है।

यहाँ बहुत सारे गाड़ी दिख रहे है और गाड़ी में गुब्बारा लगा हुआ है रंग-बिरंग हेलमेट दिखाई दे रहा है।